पीछे में बहोत सारा घर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे स्कूटी दिखाई दे रहा है।

एक सी_सी टी_वी कैमरा दिखाई दे रहा है।

लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का आगे मे एक लड़का दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा डेस्क और बेंचेज भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सरल वायर दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

और एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यह तस्वीर में मेला दिखाई दे रहा है।

एक फोटो भी दिखाई दे रहा है।

एक पीछे में बहुत सारा बम्बू भी दिखाई दे रहा है।

क्यू_आर कोड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बास्केट भी दिखाई दे रहा है।